जहां कुछ लोग मंच में एक कतार में खड़े--

सामने कुछ लोग मेज पर बैठे हुए हैं।

वहीं कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे--

यह किसी गार्डन में रखे हुए खेल के सामान है।

यह किसी पहाड़ी क्षेत्र का दृश्य लग रहा--

यह किसी कॉलोनी का दृश्य लग रहा है।

प्रतीत होता है यह किसी नेशनल पार्क का है।